और साइड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसके पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है।

लाई हैं और दिखने बहोत सुंदर लग रहा हैं यहां पर आने से आपके पेट में--

कॉम्प्लेक्स भी है और साइड में एक कैफे है बच्चे इसमें कुछ खा सकते हैं भर पेट।

यहां एक बस्तर डेयरी फॉर्म है यहां पर--

पेड़ पौधे लगे हुए हैं और दिखने में ये एकदम साफ सुथरा फ्रेश है और बहोत सुंदर दि--

यहां पर दुर्गा पूजा हो रही है वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है और--

और यहां इस पार्क में सफाई भी है।

टी पीने से आनंद आता है।

यह भी एक लाइब्रेरी है और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और काफी कुर्सियां खाली--

और दो कारे खड़ी हुई है औ आ--

इस रोड को देखने के बाद लग रहा है कि सब--

यहां पर ट्रक आते हैं और साइड में कार खड़ी हुई है और साइड में से दो बाइक वाले आ रहे हैं।

स्टैंड रखा हुआ है और साइड में दस--

इस दुकान में दो आदमी और एक औरत हैं और सी_सी_टी_वी कैमरे हैं।

खड़े हुए है और एक पोस्टर लग लिख रखा है अपोलो ।

ब्रेड रखी हुई है आदमी गौर से देख रहा है।

भर रखी है और सभी औरतें में से कुछ औरतें हाथ जोड़के प्रार्थना--

एक पेड़ उगा हुआ है और साइड में औरते बच्चे पुलिस वाले सभी उसको देखने के लिए उत्साहित है।

वहां सब काला काला दिखाई दे रहा है झरने के बाद बहुत--

पीछे एक पहाड़ है पहाड़ पर छोटी छोटी घासे उग रही है उसको देखने में बड़ा आनंद आ रहा है।